आसपास हमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य हमें किसी सीवरेज का नजर आ रहा है।

आस पास हमें कुछ जे_सी_बी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस दृश्य में हमें एक ग्राउंड नजर आ रहा है।

पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें आसपास कुछ पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक मंदिर नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हमें सोफे लगे हुए दिखाई दे रही हैं।

दृश्य में हमें टेबल पर कुछ कंप्यूटर्स पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य हमें एक पार्क का नजर आ रहा है।

पार्क में हमें झूले भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य हमें एक गिफ्ट शॉप का नजर आ रहा है।

बोट को लोग चक्कु से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और वायर्स टंगी हुई दिखाई दे रही है।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

यहाँ पर हमें बहोत सारी एल_सी_डी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।